यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां दो मकान दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की ओर तीन चार दुकान है।

यहां पर पढ़ने लिखने की बहोत सारी चीज़ें है।

तस्वीर एक ग्रॉसरी शॉप की लग रही है जहां सेल लगा हुआ है ऊपर मैगी दिख रहा है।

सामने पर्क फाइव स्टार और बंटी कोकोनट दिखाई दे रहा है।

हेडफोन वगैरा चार्जिंग केबल ।

यह शायद एक कैफे की तस्वीर है।